बहुत सारे गिफ्ट्स लाये गये हैं।

यहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं ।

बहुत सारे आदमी यहाँ पे आए हुए हैं।

यहाँ पे झंडा फहराए गए हैं।

बाज़ार है यह बाज़ार बहुत बड़ी है।

यहाँ से लोग आए हुए हैं कंबल धोने के लिए दिए गये हैं।

यहाँ पे दीपक जलाये गये है।

यहाँ पे बिजली के खम्बे भी है।

सभी बीमारी का इस इलम इस हॉस्पिटल में इलाज होता है।